जो एक कॉन्पैक्ट हैचबैक है।

इसमें मुख्य विवरण में शामिल है।

तीन तरफ चेयर पड़ी हुई हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यह किसी मॉल या किसी फैक्ट्री की फोटो दिखाई दे रही है।

एक तरफ पटरिया बिछी हुई है जो खाली है।

गंगा स्नान अनुष्ठान की तरह दिखाई देता है।

यह हरी मिर्च का दृश्य दिखाई दे रहा है।